एक बड़ा हॉल है जिसमें एक मैम खड़ी हुई है मैम मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहीं हैं और दो लड़कियां आगे पीछे बैठी हुई हैं।

खम्बा अ काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। एक चिड़िया दिखाई दे रही है।

एक खिड़की दिखाई दे रही है जिसमें एक चेयर रखी हुई है। मैंम बैठी हुई है। कुछ बच्चे ड्राइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक --